नीचे दर एक दुकान है जो की बंद है इस दुकान के सामने एक सरक है ।

ये एक जगह है इस जगह में एक बड़ी इमारत है ये इमारत बहोत बड़ी है इस इमारत में बड़े-बड़े कमरे हैं इस इमारत के सामने मोटरसाइकिले खड़ी है मोटरसाइकिल --

के ऊपर आदमी बैठे हुए हैं समाज के दूसरी तरफ एक ब्लू डब्बा पड़ा हुआ है डब्बे के अंदर हम कुरा डालते हैं।

जगह के सामने लोंग है जो की चीज़े खरीदने के लिए आ रहे है इस ज --

यह एक जगह है यहां बहुत बड़े बड़े ताकि लोग करने के लिए आते है यह जगह बिल्कुल साफ है जिसका रंग सब्ज है।

जमात अ का फर्श बिल्कुल साफ है उसकी छत्त बिल्कुल साफ है इसमे का रंग बुरा है ।

ये जो छत्त पर जो चीज़ लटक रही है इस छत्त का रंग सफ़ेद है ई--

के नीचे सफेद रंग की लाइन लगी हुई है के दूसरी तरफ लाल रंग की बनी सड़क के दूसरी तरफ दो आदमी खड़े हुए हैं जिनके ऊपर सफेद और काला है।

खूबसूरत कुछ जगह है ताकि लोंग इसमे आए और खूबसूरत फूलअर्शिया खरीद सके ।

ये दुकान है ये चीजों की दुकान में इस दुकान में बहुत ईर्ष्या खाने पीने की चीज़े मिलती है।

यह एक मंदिर है जिसपे लोग पूजा करने के लिए आते हैं इस अ की दीवारों का रंग अ बहुत बहुत खूबसूरत से सजाया गया है इस --

यह खेत का मैदान है मैदान के दूसरी तरफ उम घास लगी हुई है जिन जिनका रंग अ सब्ज है मैदान के दूसरी तरफ बड़ियाँ --

इसकी छत्त बिल्कुल साफ है छत्त का रंग सफ़ेद है इसकी छत्त अ पंखा लगा हुआ--

इस अ बाग में बड़े बड़े मिट्टी हैं इस ब अ बाग में पत्थर भी लगे हुए हैं अ इस बाग में बहुत जानवर हैं अ एक हिरण --

जमात की छत्त का रंग सफ़ेद है इस जमात के ऊपर मैंने मेरे पतियाँ लगी हुई--